इस इमेज में एक घर दिखाई दे रहा है जो काफी सुंदर है और इस पे चौकोर करके डिजाइन बनाया गया है|

इस फोटो में एक पूजा मूर्ति का पंडाल दिखाई दे रहा है जो काफी नकली फूलों से सजाया हुआ है पंडाल काफी सुंदर दिखाई दे रहा है इसमें दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें सादा रंग का कलई किया हुआ है और चारो और जाली से घेरा हुआ --